हेलो फ्रेंड्स जैसा की आप देख रहे है यहाँ पर एक मार्केट दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

घने जंगलो में तो जानवर भी आ सकते है।

और ये एक आदमी चश्मा लगाए हुए बैठे हुए है और एक आदमी बिना चश्मा लगाये हुए बैठे हुए मुस्कुरा रहे है।

वाद्य यंत्र सिखाये जाते है जैसे की तबला --

स्कूटिस खड़ी हुई है एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है जामा मस्जिद की जो बिल्डिंग का कलर है वो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।